इस तस्वीर में हमें कई सारी लड़कियां दिखाई गई हैं।

सभी ने एक ही कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

ऐसा लगता है कि इस शोरूम का निर्माण अभी अभी हुआ है।

सामने ही कुछ ऑटो रिक्शायें भी रखी हैं और उन्हें सजावट दी गयी है।

इस तस्वीर मे हमे एक खुले मैदान का दृश्य दिखाया गया है।

सामने ही एक छोटा सा मंच भी दिखाई पड़ रहा है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति चाय या कॉफी पी रहा है।

तस्वीर किसी होटल के अंदर की लग रही है।

यह एक फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर है।

इस तस्वीर में हमें एक धार्मिक स्थल का दृश्य दिखाया गया है।

जिसके अंदर एक मूर्ति रखी हुई है मूर्ति के चारों ओर सजावट भी हुई है।

यह एक पोस्ट और टेलीग्राफ कालय की तस्वीर है।

यह तस्वीर एक पुरानी वैध्य गुफा की तस्वीर है।

गुफा पत्थरों को काटकर बनाई गई है और अंदर एक बड़ा स्तब्ध है जहां विष्णु पूजा और ध्यान करते है।

वो कार के पीछे हिस्से पर पेंट या रंग लगा रहा है।

यह तस्वीर एक आदमी की है जो एक हाथी की मूर्ति के पास बैठा है।

जो कुछ स्टेज या फिर डांस फंक्शन के लिए स्टेज का आयोजन कर रहे हैं।

और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है।

यह एक बस अड़े का दृश्य है जहां यात्री सफर के लिए आते हैं।

चित्र में कुछ घर हैं पेड़ हैं और नदियां भी दिखाई पड़ रहीं हैं।

इस तस्वीर में हमें एक चर्च का दृश्य दिखाया गया है।

जहां कई सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बुक स्टोर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसका नाम आरती बुक स्टोर है।

काउंटर के बाहर अपने काम का इंतजार कर रहे हैं।

लोगों ने मार्क्स पहना हुआ है जिससे कि लगता है कि यह कोविड नाईनटिन के समय का तस्वीर है।

इस तस्वीर में हमें एक चाय और कॉफी की दुकान दिखाई गई है जिसका नाम डी_एस_पी सोडा एंड कॉफी शॉप है।

दुकान के दीवार पर बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर सोडा चाय कॉफी बिस्किट बेकर आदि के नाम लिखे हुए हैं।

सामने ही कुछ लोग भी खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक मेले का दृश्य दिखाया गया है।

यहां बहुत सारे लोग मेले को देखने के लिए आए हैं।

और बहुत सारे सर्कस भी लगे हुए हैं।

पारंपरिक कुर्ता और पगड़ी पहने हुए हैं और गले में वरमाला डाली हुई है।

सामने ही एक येलो कलर की कुर्ता पहने आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक स्कूल का दृश्य दिखाया गया है।

जिन के सामने महिलाएं पूजा कर रही हैं और आशीर्वाद ले रही हैं।

बस में लिखी है बेलगवी टू धारावद ए_जी_सी वोल्वो ।

जहां कई सारे बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यह तस्वीर एक क्लास रूम की है जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हैं।

सामने ही शिक्षक भी व्हाइट बोर्ड पर कुछ करा रहे है और शिक्षक उन्हें समझा भी रहें हैं।

सामने छात्रा छात्राएं उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं।

सभी बच्चे अपने चित्र में रंग भर रहे हैं और पिछे उनकी अध्यापिका भी उन्हें देख रही है।

इस तस्वीर में एक बाग का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें एक गोडाउन का दृश्य दिखाया गया है जहां बहुत सारे लेबर भी भी दिखाई पड़ रहे हैं।

इस तस्वीर के अंदर हमें किसी आदमी के पांव दिखाए गए हैं।

जिस पर कुछ बैंडीज लगा हुआ है ऐसा लगता है उस आदमी के पांव पर चोट लगी है।

यह जगह किसी छोटे गेरेज या वर्कशॉप की तरह लग रही है जहां गाड़ियों की सर्विस या रिपेयरिंग की जाती है।

इस तस्वीर में एक बस स्टेशन का दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

और सामने ही अध्यापक भी उन्हें देख रही हैं।

एक महिला माक्स लगाकर खड़ी है और अपने बैग साफ करवा रही है।

इस तस्वीर में हमें एक बाजार का दृश्य दिखाया गया है।

सामने ही तस्वीर के आगे हमें एक फूल की दुकान दिखाई गई हैं।

इस तस्वीर में रंग बिरंगे नावे झील या नदी के किनारे पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर मे एक साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है दुकान के अंदर बहोत सारे नये साइकिल्स रखे हुए --

तस्वीर में कुछ महिलाएं योग कर रही है वे सभी एक लाइन में खड़ी होकर वृक्षासन कर रही है जिसमें एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर मोड़कर जंघा पर रखा जाता है।

इस तस्वीर में एक घर के अंदर कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

बाई ओर एक रिक्शा भी दिखाई दे रहा है सड़क कच्ची और टूटी हुई है जिसमें गड्ढे नजर आ रहे हैं।

दुकान में रोशनी लगी है और लोग बर्तन खरीदने और देखने आए है।